ये एक बहोत बड़ी दुकान है यहां पे। एक आदमी समीन खरीद रया है।

और यहा पे एक हरा कलर का गेट भी है यहा पे एक--

यहां पे एक्सीडेंट हो रखा है गाडि का और यहा पे बहुत ज्यादा सही गाडि भी--

यह एक बहुत बड़ा डी_जे साउंड है यहां पे बहुत ज्यादा बॉक्स लगा रखे हैं।

और यहां पे अलग अलग कलर की लाइट भी लगा रखी है यहां पे एक आइस भी रख रखी है।

ये एक बहोत बड़ी साइकिल की दुकान है।

यह एक बहुत बड़ा पहाड़ है यहां पे बहुत बड़े बड़े पत्थर है और यहां पे एक बहुत बड़ी--

और यहां पे बड़े बड़े पत्थर भी हैं।

और यहां पे बड़ी बड़ी कुर्सी रख रखी है।

और यहाँ पे एक बहोत बड़ा खंभा लगा रखा है जिस पे लाइट लग रही है।

और यहां पे बड़ी बड़ी कुर्सी भी लगा रखी है।

यहां पे एक बहुत बड़ी हार्डवेयर की दुकान है यहां पे एक कंप्यूटर भी--

आदमी की फोटो लगा रखी है मरे आदमी की और यहां पे बहुत बड़े बड़े बोर्ड भी हैं यहां पे बहुत बड़े बड़े।

अब एक टेबल भी रखी हुई है।

और यहाँ पे बाल्टी रख रखीं हैं।